पार्सल वाला एक बाइक से जा रहा है।

तुलसी का गमले में एक तुलसी का पेड़ हैं।

ऑफिस है और डेक्स में कंप्यूटर है उसके बाजू में माउस है पेन है पेपर है।

और एक अ उसके बाजू वाले चेयर में बैठा है।